और रिचार्ज हमारे लिए जरुरी है। बहुत आदमी रिचार्ज कराने के लिए आते है।

और यह मंदिर में अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं ।

कार का फोटो दिखाया यह दिखने में बहोत सुन्दर लग रहा है और यहाँ बहोत आदमी घुमने के लिए आते हैं और यहाँ बहोत हरियाली --